और साइड में और बहोत सारी बॉटल्स और सामान रखा हुआ है।

यहां पर गैस है गैस स्टैंड है जिसपर बहोत सारे बर्तन कूकर रखे हैं।

सामने बाइक से आगे की तरफ जा रहा है सामने से निकल कर।

आज सामने कुछ पौधे और फ्लावर लगे हुए दिख रहे हैं पीछे की तरफ--

इसके साइड में एक शॉप है जहां पर नीले कलर का पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पर एक जिम है जो पूरा सफेद कलर से पेंट है और इसमें बहुत सारी मशीनें रखी हुई है।

चेयर लगी हुई है वहां पर एक लाल कलर का अग्निशामक यंत्र टांगा है।

यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है जो एक दीवार पर लगा ये पोस्टर सफेद कलर का है।

एक सफेद कलर की बिल्डिंग है और साइड में एक घर और है।

और चारों तरफ बहोत अच्छे घर बने हैं सामने एक रेड घर बना हुआ है।

बड़े पेड़ लगे हुए हैं जगह-जगह पर स्ट्रीट लाइट लगी है।

और इस बिल्डिंग पर लाल कलर की नेम प्लेट लगी है जिस पर पुलिस असिस्टेंट रूम लिखा हुआ है।

और यह कुछ गुच्छों में भी लगे हुए हैं और कुछ सिंगल भी--

यहां पर एक मेडिकल है मेडिकल में बहुत सारी दवाएं--

रखी हुई है सामने की तरफ एक अलमारी है जिसमें भी बहुत सारी दवाइयां रखी है सामने --

पर्चियां पड़ी है और एक व्यक्ति दवाइयां निकाल कर दे रहा है जिसने हरे कलर का माक्स लगाया है। बाहर भी लोग खड़े हैं।

नीचे की तरफ कुछ फाइल्स और बुक्स नीचे की तरफ भी अरेंज करके--

और यहां पर लाल और सफेद कलर के बहुत सारे बलून लगे हुए हैं।

नीचे की तरफ कुछ चटाइयां बिछी हुई हैं सामने की तरफ कुछ टेबल्स लगे हुए हैं कुछ डंबल भी टंगे हुए हैं।